शिमला मिर्च भी है और उप्पर लाइट --

इस तस्वीर में एक स्टेज जैसे जे दिखाई दे रहा है और उसको काफी खूब --

और वो लाल रंग के हैं नीचे परदे --

इस तस्वीर में एक गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बनी हुई है और वहाँ पे कुछ छोटी छोटी भी --

क्यूंकि उसमे छोटी-छोटी बोटलें रखी हुई हैं और सामने एक शीशे का काउंटर --